ड्राइंग बना रहे हैं जो कि अपना --

यह हॉस्पिटल है जहाँ पे एच् आई वी टेस्ट होता है।

यहाँ पे दो गाड़ियाँ दिख रही हैं यह गाड़ियों का गैरेज है जिसमे गाड़ियों का सर्विसिंग किया जाता है ।